और यहां पर एक बोतल रखा है।

और इसके इर्द कु सायकिल रखी हुई हैं।

पर यह एक नारंगी कलर का बोर्ड लगा हुआ है और इधर --

क्या आप देख रहे हैं। यह एक हाॅल हैं। यहां पर काले कलर की कुर्सियां लगी हुई हैं।

अखिल भारतीय रोजगार यू.पी. पुलिस टेट परीक्षा --

और यहां पर एक शीशे का दरवाजा है जिसके --

आगे स्टील का हैंडल लगा हुआ है। सामने एक साइकिल है।

सामने आप देख रहे हैं एक छत है। छत पे दो टेबल रखे हुए हैं।

आगे बना लिखा हुआ एस.बी.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ़ कोचिंग टाॅपर्स फॉर एस.बी.एस --

जिसमे कि एक ने टी शर्ट पहना है और बाकी ने शर्ट्स पहनी हुई है।

देख रहे हैं एक घर है और घर के पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

आप सामने देख रहे हैं। एक रास्ता है। रास्ते के अ आगे डिवाइडर लग बना हुआ है।

अंदर फुंवारा लगा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा हैं।

उसने हाथ में एक लोहे का राॅड़ लिया हुआ है।

भूरे कलर के कार्टून रखे हैं और यहां पे बड़ी सी नीचे आलमारी हैं। उसमें सारे बोहोत सारे खाने हैं और इसमें बोहोत सारे सामान रखे हुए हैं। ऊपर लाइट जल रही है।